फोटो खींचते हुए नजर आ रहा--

लंबा सा घर बना हुआ है।

जैसा कि आप देख रहे हैं।

जैसा कि आप देख रहे है।

यहां पर एक लड़का खड़ा है।

यहां पर एक रेस्टोरेंट है।